इस दुकान में एक मूर्ति भी रखा हुआ है।

यहां पर एक सोफा भी है।

कुर्सियों पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

इस दुकान में वाशिंग मशीन भी है।

इस दुकान के बाहर बहुत सारी पानी की बोटल रखी हुई हैं।

एक आदमी बोलेरो के अंदर कुछ कर रहा है

तालाब में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं।

यहां पर कुदाल भी है।

यह एक स्कूल बस है।

इस क्लास रूम में एक शिक्षक खड़े हैं।

इस कार्यक्रम में डी_जे भी--

यहां पर कोई कार्यक्रम हो रहा है।

मटको का रंग लाल और पीला है।

दूसरे का रंग नीला है।

मैदान में तीन खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

कूल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए है।

इस फ्लैट के बगल में एक घर दिखाई दे रहा है।

इस दुकान में कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।

इस पंडाल में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं।

इस पंडाल में ढेर सारी कुर्सियां है।

यहां पर ढलाई का काम चल रहा है।

इस पट्टे पर पेंसिल पत्ती रखा हुआ है।

नदी में नांव तैर रहा है।

इस दुकान में प्याज भी है।

यहां पर कुछ खिड़कियां भी दिख रही हैं।

यहां पर एक मोर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक कंप्यूटर है।

यहां पर काफी सारे पंखे हैं।

उन बसों का रंग पीला है।

के बाहर एक डस्टबिन है।

इस कमरे में एक बेड है।

इस कमरे में एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी है।

स्कूल के बाहर एक नीले रंग का घर दिखाई दे रहा है।

इस स्कूल में चार बालकनी है।